जिसमें से एक गाड़ी सफेद कलर की होंडा सिटी है।

कटलरी सामान बेचने की दुकान दिखाई दे रही है।

उस गेट के द्वार पर कुछ लोग खड़े हैं। उस गेट के ऊपर लिखा हुआ है।

उस दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है गोलू फर्नीचर मार्ट ।

जिनके कलर सफेद काला गेवुआ ब्राऊन हैं।

मुझे इस चित्र में एक बहुत बड़ा दुकान नजर आ रहा है।

मुझे इस चित्र में एक बहती हुई--

बहुत बड़े बड़े गोडाउनों की छत--

पी_टी कर रहे हैं। उस ग्राउंड के बाहर बहोत सारे लोग उन्हें देख रहे हैं।

मुझे इस चित्र में एक दुकान नजर आ रहा है उस दुकान के अंदर--

जैसे की जींस शर्ट्स टी शर्ट्स बच्चो के कपड़े नजर आ रहे हैं।

मुझे इस चित्र में एक दुकान नजर आ रहा है उस दुकान के अन्दर--

एक बंदा उसमें गो कारटिंग कर रहा है।

मुझे इस चित्र में एक बोहोत बड़ा रेस्टोरेंट --